-- जो एक बड़ा सा गेट है जो कि पूरी तरह फूलो से सजाया गया है और डेकोरेट किया गया है येल्लो कलर की और से और उसके आगे जो है दो आदमी खड़े हुए है एक आदमी जो है आगे देख रहा है और दूसरा आदमी जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा हैं।

और मछलियाँ जो है वो कुछ बड़े साइज की है और कुछ छोटे साइज की हैं।

उसके बाजु में एक एक आदमी बैठा है जो कि मछलियों की तरफ देख रहा है उसके साइड में एक और आदमी बैठा हुआ है जो कि मछलियों की तरफ देख रहा हैं।

उसके सामने ही बहोत सारी गाड़ियां जो हैं वो पार्क की गई हैं उसके साइड में एक ऑरेंज कलर की वॉल हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉटर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं।

इनके सामने जो है बड़े बड़े मिरर है और वो जो है पूरी तरह से बैलून से डेकोरेटे किए गए हैं।

ये एस_बी_आई_ बैंक की ए_टी_एम है जहाँ पे रात का मौसम है और ए_टी_ऍम के अंदर जो है ओवर ऑल तीन आदमी खड़े हैं।